यह तालाब की पानी बहुत ही हरा हरियाली छाई हुई है।

इस नदी में नाव भी चलते हैं।

यह मंदिर में राधे-कृष्ण जी के प्रतिमे दिखाई दे रहे --

एक नाव खड़ी है | यह नाव पर सभी आदमी चढ़ कर खड़े हैं | यहाँ पर लेडीज जेंट्स --

यह यहाँ पर एक चपाकल भी है ये घर के बाहर --

यह यह सड़क के किनारे दोनो तरफ से बहुत ही बड़ी-बड़ी बिल्डिंग भी दिखाई दे रहे --

है यह सड़क काफी बड़ा है।

यह कपड़े के दुकान में बहुत से ग्राहक कपड़े खरदीने के लिए आए हुए है।